यहाँ पे एक लइके अउ लइका का डाँसर हो रही है एक प्रैक्टिस करने की वजह रंग-बीरंग के घर दिख रहे है लाइट दिख रहे है।

एक अंदर में जिम रखने वाला है ऐ यहाँ पर जिम करते है लोग बॉडी बनाने के लिए यहाँ का हर सामान मस्त दिख रहा है।

चट्टानें है बहुत सुन्दर दिख रहा है यहाँ का लोग बहुत फोटो खिच रहे है।

एक गुफा है ओ भी सन पत्थर का बहुत बड़ा गुफा है अंदर में घुस-घुस के आदमीये देख रहे है बहुत सुन्दर सुं--

यहाँ पे एक डांसर वाली एकदम मस्त लग रही है सुंदर सा एक टेंट लगाया हुआ है बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पे डांसरों व डांसर किए हुए हैं।